यहाँ पे तीन-चार जो है ऑटो रिक्शा खड़ी हुई हैं। एक ऑटो रिक्शा जो है वो रेड कलर की है उम्म उम्म उसपे पन्नी चढ़ी हुई है आगे।

आ टीकी आ दिवार से बैठी हुई है। यहाँ पे जो लड़का है वो स्टाइल पोज मे खड़ा आ पोज़ मे खड़ा हुआ है।

मुझे इसके बिलकुल आगे जो हमे एक ऑरेंज कलर का --

एक रेड कलर में ईं बोहोत बड़ी जो है मंदिर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक येलो कलर की चोटी लगी हुई है।

यहाँ पे जो है एरोप्लेन अभी बस होने ही वाला है।

बहुत सारे लोग स्केटिंग कर रहे हैं। हम्म यहां पे बड़े बड़े ग्रीन कलर के जो हैं --